यहां ईंटे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बोर्ड में यामाहा सर्विस शैल यामाहा लिखा दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क लगाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर पहाड़ के बीच में बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

यहां कई सारे बत्तियां भी नजर आ रही ह--

यहां बहुत से लोग बैठे हैं सबके कपड़े का रंग अलग अलग है।

यहां कुछ औरतें हाथ जोड़कर बैठी है।

यहां पर दो ऊंची ऊंची इमारतें सफेद रंग की नजर आ रही है।

यह सफेद रंग का इमारत एक मस्जिद है।

यहां बहोत साफ र सड़क दिखाई दे रहा है।

यह किसी खेलने का स्थान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारी मशीनें भी दिखाई दे रही है।

यहां कुछ अलग अलग रंग की बत्तियां भी नजर आ रही है।